नीचे की जगह पूरी दिखाई दे रही है जिसमे दो रोशनदान और ऊपर टिन शेड दिखाई दे रहा है।

ये एक स्टेज का फोटो है। जिसे सफ़ेद लाल रंगोसे फूल के रंगोसे सजाया हुआ है। गोल्ड मा आकार दिया गया है। इसमे दो कुर्सिया राखी हुई है। जिसपर ग्रीन कार्पेट बिछी हुई है।

साइड मे मोटर सायकल खड़ी हुई है और एक तीन मंज़िला इमारत नजर आ रही है। जिसमे सामने --

लाल कलर की कार्पेट बिछी हुई दिखाई दे रही है और सामने हरे छोटे छोटे बल्बों से डेकोरेशन की गयी है एक पेड़ की पत्तिया लटक रही है।

फोटो मे एक नीले कलर की टंकी दिखाई दे रही है और एक काले कलर की कार खड़ी हुई है एक मोटर दिख रही है जिसमे काले और सफ़ेद रंग का पाइप --

इस फोटो में पानी से भरा एक समुद्र दिखाई दे रहा है जिसके बीचों अं में एक शिप खड़ी हुई है इस जहाज दो मंज़िला जहाज हैं जिसके ऊपर--

इस फोटो मे कृष्णा और राधा की फोटो दिखाई दे रही है। कृष्णा भगवान के सिर पर मुकुट और मोर पंख दिखाई दे रहा है। हाथों मे बसुरी है।